और घर में कुछ अलमारी पर कांच लगा हुआ नजर आ रा है।

एक बिल्डिंग के पास में सफेद कार है और दूसरी बिल्डिंग के पास में नीले कलर की कार खड़ी है।

एक घर दिखाई दे रहा है घर के घर में कुछ अलमारी दिखाई दे रही है।

और गार्डन में लाइट के खंभे दिखाई दे रहे हैं और कुछ तार दिखाई दे रहे हैं।